यहाँ पर बहुत सारे जैंट्स बैठे हुए है एक तस्वीर लगी हुई है व्हाइट कलर का टेंट लगा हुआ है यहाँ पे--

वो सब झुला झूल रहे हैं एक ने नीले कलर की टॉप पहनी हुई है और अगले ने येलो कलर का कुर्ता पहना हुआ है।

यहाँ पर बहुत सारे जैंट्स खड़े हुए है और कुछ महिलाये भी है और यहाँ पर एक कार भी खड़ी हुई है सब एक साथ खड़े हुए है।

एक बाइक पर एक जेट्स जा रहा है और एक महिला बैठी हुई है एक ऑटोरिक्शा जा रहा है और बगल में दो बाइक है और बहुत सारे जेट्स खड़े हुए है।

और इस बिल्डिंग के ऊपर रेड कलर से कुछ लिखा हुआ है और चॉकलेटी कलर की पेंटिंग हुई है यहां पे --

यहाँ पर दो मुर्तिया हैं। एक ने येलो कलर की चुनर ओढ़ी हुई है एक ने वाइट कलर की और यहाँ पे--

यहाँ पर तीन कमरे हैं। तीनों में शटर लगी हुई हैं और तीन ई-रिक्शे खड़े हुए हैं यहाँ पे।